मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शायद न्यू जिम खुली है क्योंकि यहाँ पर ढ़ेर सारे गुब्बारे पड़े हुए हैं और जिम के सामान पार डेकोरेशन हो रहा है।

यहाँ पर बच्चे आके स्विमिंग पूल में नहाकर मजे कर सकते हैं और यहाँ पर मेरे जाने का भी बोहोत सारा मन भी है पर लेकिन मैं नहीं जा सक --